कुकर कमीना लौड़ा के बाल मादर चो--

ट्वीटर में लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब मिलेगा।

यह ऐसा लग रहा है कि किसी स्कूल या फिर गार्डन वार्डन का जगह है यहाँ पर मैं तो दौड़ने आता हूँ भाई रोज आप लोग समझ नई पाओगे लेकिन मेरी तकलीफ को मैं इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ भाईयो मेरा--

यहाँ पर ना मेरे नानी या दादी मेरा इस लोग भाई लोग भी भेजता है न दूध लेने के लिए तो मैं यहीं पर आता हूँ दूध लेने के लिए भाई मेरा छोटा भाई सही है न भाई न भाई मेरा भाई छोटा भाई यहाँ आवो भाई --

आइए एंजॉय कीजिए यहाँ पर आके।

भाई महल टाइप दिख रहा है इतना सुंदर नजारा मैं तो आज तक कभी नहीं देखा हूँ भाई ऐसी नजारे में रहने का मेरा भी शौक है भाईयो ऐसी जगह मे मेरे को भी रहना चाहता हूँ लेकिन मैं गरीब इंसान हूँ इसीलिए रह नही पाता हूँ।

ये भैंस जो दिख रहा है छोटा श्लोक भाई है छोटा भाई है बहुत सुंदर दिख रहा है मेरी तरफ देख रहा है वैसा भाई वाह भाई टाटा भाई अच्छा दिख रहा है भाई क्या मस्त दिख रहा है भैसीन हैऔर --

और अगल-बगल में सर लोग है कोई भी होगा उनके दादा पर दादा उन लोग--